और उसके आसपास भी एक दो और बाइक खड़ी हुई हैं।

इस फोटो में सामने एक गेट नजर आ रहा है।

सामने बहुत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर साइड में एक पेड़ और दिखाई दे रहा है।

कुछ दीवार भी वेह पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

उसके पीछे कुछ लोहे की चीजें भी दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में सामने कुछ मशीनें लगी हुई हैं।

ऊपर भी कुछ यहां पर लिखा हुआ है।

इसका कलर है येलो ।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

यहां पर कुछ छोटे छोटे घास भी दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जो की ब्लैक कलर का है।

पीछे कुछ फोटोएं भी दिखाई दे रही हैं और सामने कुछ सामान भी रखा हुआ है। यहां पे चॉकलेट वगैरा --

पीछे कुछ छोटे छोटे घास भी दिखाई दे रहे--

उसके पीछे भी कुछ व्यक्ति--

पीछे कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में सामने एक रूम दिखाई दे रहा है।

साइड में एक बोर्ड वाइट कलर का नजर आ रहा है।

जो की बैनर को पकड़े हुए खड़े ह--

इसका नाम श्री महेंद्र हरिद्वार दास उच्च विद्यालय है।

जो की उसमें एक पार होकर रोशनी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

कागज से बहुत सारी चीजें बनी हुई रखी हुई है।

इस फोटो में सामने दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

उसके पीछे एक ए_सी भी दिखाई दे रही है।

जिसमें से कुछ बॉक्स भी दिखाई दे --

साइड में एक मिरर भी नजर आ रहा है और उसके सामने कुछ पन्नियां भी रखी हुई हैं।

किसी काम को कर रहे हैं।

पानी जो नीचे की ओर तालाब में जा रहा है।

इस फोटो में सामने कितने सारे लोग बैठकर टेबल पर खाना खा रहे हैं।